और छोटा-छोटा बच्चा पढ़े जाता है।

योग कर रहा है बच्चा लोग बड़ा लोग भी है ।

और बड़ा शांति जैसा लग रहा है।

माता जी का मन्दिर है।

मिलता होगा किताब गैस पेपर ।

कॉपी कलम पेन सब --

एंड डेकोरेशन किया हुआ है शादी का फंक --

महल बना हुआ है।

बैठने के लिए बना हुआ है अंदर में घर है ।.

सब बच्चे लोग खेल रहें हैं नहा रहें हैं।

पूल में जे कोई रेस चल रहा है।

मम और चश्मा का दुकान है चश्मा वाला है।

बगल में एक बक्सा वाला घर है।

जंगल में अथी में है पिंजरा में बंद है।

बुलु का टोपी पहने हुए है।

महिला लोग चद्दर ओढ़ के बैठी हुई है ।

एच.डी.ऍफ़.सी. का ए.टी.एम. भी दिख रहा है।

जैसे लग रहा है स्वतंत्रता दिवस की --

किया हुआ उसमें एक आम का पेड़ है।

महिला लोग और पुरुष लोग भी कर रहें हैं।

आगे भी ट्रक दिख रहा है पीछे भी एक ट्रक का --